एक मैदान है उसमे बच्चे फुटबॉल खेल रहे है तीन व्हाइट कलर के टीशर्ट पहने है।

जोदोपुर रोड़ राजवाही कालोनी रेड कलर का एरो भी--

यह मंदिर है फूलों से सजा हुआ है बाहर लाइटे लगी है व्हाइट कलर का पेंट है ऊपर ग्रीन और ब्लू कलर की लाइटिंग लगी हुई--

येलो रेड तार है ब्राउन कलर का कपबोर्ड है और खिड़की है ब्राउन और ब्लैक गेट है।